और यह ऊपर में बहुत सारे घास फूस हैं।

एक वायर टाइप का दिखाई पड़ रहा है।

अ मजदूर है एक इंजीनियर है इधर भी एक फीता लेकर के नाप रहे हैं।

और कुछ मकान बने हुए हैं सामने बहुत सी सीढ़ियां हैं।